यहां पास किसी का घर बन रहा है शायद ये अभी आधे बने हुए है बगल बग-- एक दो घर बन रहे है यहाँ पर दो--

रेड शर्ट टी-शर्ट पहने हुए यहाँ पास फ्रिज भी दिख रहा है एक लड़का किसी को एं कॉफ़ी दे रहा है यहाँ पास कप्स भी रखे हुए है एक फैन लगा हुआ हैं।

एक आदमी दुकान के पास खड़ा है एक आदमी उधर देख रहा है एक आदमी उधर देख रहा है यहाँ यहाँ पर चप्पल भी दिख रही है।